सुंदर लग रहा है यार बहोत अच्छा देख--

आनंद ले रहे हैं बहुत सुंदर देखने में लग रहा बहुत अच्छा--